एरिया दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर--

जो कि हमारे पास दो नीले रंग के केबिन बने हुए है उसके अंदर काफी आदमी बैठे हैं उसके बाहर एक स्टार बना हुआ है जिसका कलर सिल्वर है।

फर्श के ऊपर वो रखा हुआ है।

और सामने एक घर बना हुआ है। इसके ऊपर सोलर लगी हुई है उसके नीचे काफी तरह की घास फूस है।

डला हुआ है उसके ऊपर एक ए_सी लगा हुआ है।

जिसके सामने एक दो तीन चार पांच छे नंबर लिखे हुए है।

उसके ऊपर एक बड़ा सारा काले रंग का जाल है।

एक घड़ी रखी हुई है उस दुकान के अंदर--

और दीवार के ऊपर दो शीशे लगे हुए हैं जिनके ऊपर एक आदमी देख कर बाल काटने लगा और वहां पर एक लड़का बैठा हुआ है।

उसके साइड में उसके साइड में तीन कुर्सी डली हुई है व नीचे हरे रंग की घास फूस है एक लुगाई वहां पर झाड़ू निकलने के लिए है।

और मिट्टी भी है उसके सामने एक टीन सेट डला हुआ एक रास्ता है उसके ऊपर दो पेड़ बुए हुए हैं।

पेड़ पौधे बुए हैं और ऊपर एक पानी का बहुत बड़ा--

उसके अंदर एक आदमी झाड़ू निकालने लग रहा--

उसके सूंड पे लाल रंग का पेंट हुआ है।

और साइड में एक लड़का खड़ा हुआ हैं उसने एक रस्सी को पकड़ रखा हैं।